इस इमेज मे एक लड़का झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहा है। डाक घर के सामने लगा हुआ है।

झाड दिखाई दे रहा है मकान दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा हैनिचे लाइट दिखाई दे रही है।